शायद ये गर्मी का मौसम है इसलिए पंखे और ए.सी. भी दोनों चल रहे हैं।

बैलून्स का कलर रेड ब्लैक और येलो है और यहाँ पर पीछे फिटनेस जिम का जो बोर्ड लगा है उसमें बहुत सी पिक्चर भी लगी हुई हैं।

ये एक मोनो लाइटिंग रेलिंग है जो कि बहुत ही लग रही है और--

ये एक दानिश पार्लर है जहां पर उन्होंने इसकी डेकोरेशन और इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया है।